यहां पर लाल रंग का टेंट है इसके नीचे दो आदमी बैठे हुए हैं।

यहां पर एक सर्कल बना हुआ है जो रंग बिरंगी है।

यहां पर ईंट भूरे रंग की हैं कुछ पत्थर टूटे पड़े हुए हैं।